इस चित्र में एक बहुत बड़ी बेकरी दिखाई दे रही है।

रेलिंग अ रेलिंग काले रंग की नजर आ रही है।

पहाड़ पे कुछ लाल रंग का रंगा हुआ है|

नीचे की तरफ एक बहोत बड़ी अ पुरानी हवेली जैसी बनी नजर आ रही --

सामने हरा कारपेट नजर आ रहा है।

दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है।

आस-पास आस-पास बहुत सारे ऑटो खड़े नजर आ रहे --

पीछे छोटा-सा घर रखा दिखाई अ घर बना दिखाई दे रहा है।